ने एक आदमी खड़ा हुआ है जो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है सफ़ेद कलर की शर्ट पेहने हुए है और कुछ ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए है।

कट्टा रखा हुआ है जो की सफेद कलर का है एक दो आदमी सामने खड़े हुए है और कुछ चड्डा पहने हुए है।

एक छत ढल रही है एक सरिये बिछे हुए हैं कुछ मजदूर तस्ला ले कर जा रहे है तो कुछ आ रहे है।

ए-ए ये एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसपे महिन्द्रा लिखा हुआ है महिन्द्रा का लाल कलर का बोर्ड है जिसमें से सफ़ेद कलर में महिन्द्रा लिखा हुआ है सामने एक बाइक लगी है पार्किंग में।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ तीन रिक्शे रखे हुए हैं एक का रंग हरा एक का पीला एक का काला है एक लड़का वहाँ से निकल रहा है जो नीले कलर की टी-शर्ट पहने हुए --

--एक था टाइगर फिल्म का पोस्टर टँगा हुआ है बगल में सफेद कलर की दिवार है।